यह एक बहुत सुन्दर सा हमें इमेज दिखाया गया है यह देखने में बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बढियाँ है।

यहाँ बहुत अच्छी-सी एक बकरी बैठी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसके आस-पास बहुत सारे घास भूस है और वह भी देखने में काफी सुन्दर और काफी बढियाँ है।

यह एक हमे बहुत ही अच्छा सा इमेज दिखाया गया है जो दिखने में बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छा है ।

सफ़र करने के लिए क्युकि यहाँ इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते है क्यूंकि यहाँ का बस बहुत ही अच्छा साफ़-सुथरा और बहुत ही कम दामों में उप में उपलब --

यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग अपनी ऑटो का सर्विसिंग कराने के लिए आते हैं।

यह देखने में बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढियाँ है यहाँ लोग दूर-दूर से आतें हैं।

यह दिखने में काफ़ी सुन्दर और बढ़िया है यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए और घूमने के लिए और यह दिखने में भी काफ़ी सुन्दर और काफ़ी बढ़िया है।

यह इमेज हमें मछली का दिखाया गया है यहां बहुत दूर-दूर से लोग मछली पकड़ते हैं और लाके मार्केट में बेचते हैं।